ये एक डॉल की दुकान है। जहाँ की बहोत सारी डॉल रखी हुई हैं।

और एक और मिरर लगा हुआ है और ये एक सैलून की तस्वीर --

और मॉल के बाहर बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में दो आदमी खड़े हैं और बोहोत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये एक म्युसियम की तस्वीर है जिसमे की बोहोत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। .

और घर दिखाई दे रहा है। बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। आसमान व्हाइट दिखाई दे रहा है।

बड़ी सी घर दिखाई दे रही है।

ये एक शादी समारोह की तस्वीर है जहाँ कि बहोत सारी अ कालीन बिछी हुई है हरे कलर की और कपड़े से सजाई हुई है लाल कलर की।

ये एक की तस्वीर है। जहाँ की --

बोहोत सारे मोटर रिक्शा दिखाई दे रही है। रिक्शे भी दिखाई दे रहे है। ये एक रोड की तस्वीर है। लाइट का पोल भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे लोहे का गेट दिखाई दे रहा है। बहोत बड़ा बहोत सारा पोस्टर्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक आदमी खड़ा है जोकि--

ब्लैक कलर का जैकेट और ब्लू कलर का पैन्ट पहना हुआ है और ब्लैक कलर का जूता पहना हुआ है। ये एक दुकान के बाहर खड़ा है।

ये तस्वीर एक फैक्ट्री की है जहाँ की बहोत सारी --

और एक सीमेंट मिक्सर की तस्वीर है जिसमे कि लोहे के लोहे का सीमेंट मिक्सर है।

इस तस्वीर में मोटर कार दिखाई दे रही है जोकि उजले कलर की मोटर कार है।